है ये बेडरूम है आगे की तरफ एक सोफ़ा रखा है एक टे बीच में मतलब की टेबल रखी है बड़ी वाली और ये देखो --